टार चिपके हुए दिखाई दे रहे हैं और तीन आदमी सामने बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं एक बहुत ही सजे हुए दिखाई दे रहे हैं। माला पहने दिखाई--

इस स्टेज पर एक सोफा दिखाई दे रहा है जिस पर दो लोग बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं| दो लोग साइड में खड़े हुए भी दिखाई दे रहे हैं| स्टेज के सामने बहुत सारे आदमी कुर्सियों पर बैठे हुए हैं और कुछ खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं।

टेबल जैसा है उसके ऊपर एक बड़ी सीमेंटेड फारसी ले जाते दिखाई दे रहे हैं दो आदमी कॉर्नर पर खड़े हुए बातें करते दिखाई दे रहे हैं।

मुझे एक ऑटो स्टैंड दिखाई दे रहा है यहाँ पर बोहोत सारे ऑटो खड़े दिखाई दे रहै है एक कार भी दिखाई दे रही है बोहोत सारी साइकिल दिखाई दे रही है।